यहां पे ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिजली की तार भी दिखाई दे रही है ओर कुछ घाँस भी उगी हुई दिखाई दे रही है। नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।